और ऊपर बिजाली की तारें हम --

काफी सारे लड़कियां नृत्य कर रही हैं।

ब्लू कलर का सोफा और प्रिंटेड कुर्सियां रखी हुई हैं और दो बड़ी बड़ी खिड़कियां--

एनस के बाहर का दृश्य दिख रहा है।

यहां हम देख सकते हैं कि यह एक--

कोल की लड़कियां रंगोली बना रही हैं।

दो डॉक्टर एक कुत्ते का ऑपरेशन कर रहे हैं।

और सड़क पर घर भी नजर आ रहा है और पब्लिक चेयर भी यहां पर पड़ी हुई है।

पीछे एक पीले सूट में औरत और एक छोटी सी बच्ची--

इसमें दो बच्चे बैठकर टी_वी में गेम खेलते हुए दिख रहे हैं।

पी_एल किचन है और अ फैमिली रेस्टोरेंट लिखा हुआ है।

और एक आदमी सेल्फी लेते हुए हमें यहां पर दिखाई दे रहा है।

लेडीज के कपड़े देख सकते हैं।